वहां एक व्यक्ति खड़ा है जो कि हाथ पे माइक लिया हुआ है।

इसके अंदर कुछ पार्ट्स और कुछ जार में सामान रखी हुई है।

नीचे सूखे सूखे पत्ते गिरी हुई है और कुछ झाड़ फूस उगे हुए हैं और बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

पत्थर भी है जिसमें छोटे छोटे पौधे उग गए हैं।